एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के ऊपर एक दीवार दिखाई दे रहा है और दीवार के सामने एक गल्ली है और आजु बाजू पौधे लगे हुए नज़र आ रहे हैं धन्यवाद।

कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे है और यहाँ एक दरवाज़ा है और वहाँ पे ही एक पेड़ है और दो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं धन्यवाद।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बिल्डिंग के नीचे नीचे के मजले पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है बाहर भी कुछ लडकियाँ और कुछ आदमी लोग खडे दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे एक हॉल है हॉल के अंदर स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज पर अ ब्लू कलर के पर्देलगे हुए है।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

इस चित्र में एक आ दुकान दिखाई दे रही है जो की बंध है और एक आ ऑफिस जैसे दिखाई दे रही है दो दीवाल है और ऑफिस के ऊपर कुछ नाम लिखा है स्टेट बैंक ए_टी_एम करके ।

बहार लोगो के कुछ लाइन दिखाई दे रही है जो की गाड़ी पे है धन्यवाद् ।

ध्र्मचाक्रप्रवतन दिन ऐसे लिखा हुआ है और गौतम बुद्ध ये मूर्ति खड़ी दिखाई दे रही है धन्यवाद ।